ये काफी सारी चेयर्स लाइन में इकट्ठी लगी हुई है।

ऊपर काफ़ी सारे पिलर खड़े किए गए है।

काफी सारा कचरा बजरी इकट्ठी हुई पड़ी है। इसको क्रेन --

ये कुछ घोड़े बांध कर रखे हुए हैं।

पेन का कलर ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट है।

ये आदमी कैमरा स्टैंड से सड़क की वीडियो बना रहा है।

व्हाइट ब्राउन एंड ब्लैक कलर की हैं।

एक आदमी धोती पहन कर जा रहा है।

सामने एल_सी_डी पर गनपति बाबा की फोटो नजर आ रही है।